और यहाँ पर लकड़ी की स्लेटी कलर है जहाँ पर यहाँ पर डिप्स मारने की मशीन रखी हुई हैजो काले रंग की है एक यहाँ पर डिप्स मारने की मशीन काळा रंग की है पीछे शीशा काँच का बना हुआ है। सामने एक लाइट बल्ब लगा है।

इस पार हमको एक गार्डन दिखाई दे रहा है लगा हुआ है एक पेड़ दिखाई दे रहा है छोटा सा जिसमें हरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

पेड़ के ऊपर हल्का-सा कीड़ा दिखाई दे रहा है एक पेड़ में गुलकंद लगा दिखाई दे रहा है पत्तियां जो हैं हल्‍के पीले कलर की यहां पे हो चुकी हैं।

ऊपर की जो दिवाले वो सफ़ेद रंग की पुती हैं। अंदर एक काउंटर बना है जो सफ़ेद और पील रंग से पोता है जिस पे लैपटॉप है है। यहाँ पे काले रंग की कुर्सी दिख रही है शीशा दिखाई दे रहा है लाइटें दिखाई दे रही हैं हमको सफ़ेद रंग की।